यह एक हॉस्पिटल है और यह हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इलाज के लिए और यहाँ पे बहुत अच्छी इलाज की व्यवस्था है। वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जोकि लोगो का अच्छे से इलाज करते हैं।